झाड़ियां भी दिख रही है।

इस दृश्य में सामने में बड़ा बिल्डिंग दिख रहा है।

सामने प्रेडिकेटर लगा हुआ है।

सामने ए_सी भी लगा हुआ है।

कुछ झाड़ियां और घासे भी दिख रही है।

यहां पर एक सेल्फ में सोच भी रखे हैं।

सामने में काउंटर भी दिख रहा है।

यहां पे तौलने वाला मशीन भी रखा है।

टॉफी के डब्बे भी रखे हैं।

यहां पे स्टेज के नीचे बैठने के लिए ब्रेंचेज लगे हुए दिख रहे हैं।

पिचर के ऊपर राली का पोस्टर लगा हुआ है।

इस दृश्य में एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

यहां साइड वॉल फैन लगा है यहां मीटर भी दिख रहा है।

यह दृश्य में कुछ लोग दिख रहे हैं।

टेबल के ऊपर टिशू पेपर रखे हैं।

सामने में कलरफुल गलास भी दिख रहा है।